किसी को भी ले जा सकते हैं बड़ी दूर-दूर तक जाइए एकदम ट्रैन के जैसा मज़ा देता है बहुत ही अच्छा सफर है बहुत मज़ा से इसका ड्राइवर गाड़ी चलाता है।

ये आपका मोबाइल शॉप दुकान है यहाँ पे आप मोबाइल खरीद सकते हैं एक से एक मोबाइल मिलता है।